पड़ोस में घास है। पड़ोस में खेत हैं और लड़के नहाने जा रहे हैं। चार-पाँच लड़के पड़ोस में खड़े हुए हैं। स्विमिंग पुल बना हुआ है। बाउन्ड्री खींची हुई है।

ये डी.जे. तीन-चार लेडिज डांस कर रही हैं। जमीनी लाईटों का फोकस लग रहा है।

यहां पर एक ट्रैक्टर खड़ा हुआ है। एक गेहूं खानने वाला थ्रेशर खड़ा हुआ है। ट्रैक्टर नीले रंग का है।

यहां पे लाइटे लगी हुई हैं। बच्चे अपने-अपने झूलों की गाड़ियों में बैठे हुए हैं।

इसने लाल रंग का एक फ्रॉक पहना हुआ है। नीचे फर्श पे कालीन भी बिछी हुई है।

ये एक ये एक स्टेज बना हुआ है स्टेज पर कई लड़कियां भरतनाट्यम का न डांस कर रही हैं।